और अपने मनोकामना मांगकर पूर्ण- पूर्ण रूप से चले जाते है।

और मकान है जो की बहुत ही शानदार दिख रहा है और नीचे में बाइक --

यह किला बहुत ही पुराने- से- पुराने हैं यह एक से बढ़कर एक व्यक्ति आते है।

और हो जाती है कोई भी आगे देखने से--